वहां पे दो दो गार्ड खड़े हैं जो की काफी अच्छे लग रहे हैं।

और यहां पे पानी भी है जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं।

बहोत सारे कांच के सामान रखे हुए हैं।

देवघर लिखा हुआ है और यहां पे दो दो व्यक्ति हैं।

और बहुत सारे छोटे छोटे समान भी रखे हुए हैं।

यहां पे एक रूम है रूम में एक व्यक्ति खड़ा है।

यहां पे बहोत सारे वृक्ष हैं।

रूम में अंधेरा छाया गया है।

यहां पे बहोत बड़ा बड़ा मकान है और यहां पे एक रेस्टोरेंट है और उसमें लिखा है अनामिका रेस्टोरेंट ।

बाजार इंडिया का भी एगो रूम है।

जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं।

वहां पे एक ब्लेक कलर का टेबल रखे हुए है उसमे से एक बोतल भी रखा हुए है।

यहां पे एक वाइट कलर का फैन भी है और यहां पे बहुत सारे बैलून सजे गए हैं और यहां पे वाइट कलर का टाइलस लगा हुआ है।

बैंक का पोस्टर लगा हुआ है।

रेस्टुरेंट में दो दो वो व्यक्ति दिखाई दे रहे है ।

यहां पे एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है और यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड में के_डी केयर हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

यहां पे बहुत सारा मकान दिखाई पड़ रहा है और यहां पे बहुत सारा व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं।

और यहां पे शेटर है।

और यहां पे रेड कलर की पेंटिंग किए हुए हैं।

और देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं।

यहां पे एक बहुत बड़ा रूम है रूम में एक अलमीरा बना हुआ है।

यहां बहुत सारे बैलून भी सजाया गया है।